और कार के पास में कुछ मशीनें और सामान पड़ा हुआ है।

और गेट के ऊपर कुछ ग्रिल लगी हुई है।

और कुछ लाइटें भी लगी हुई है इसके पास में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

और इसमें कांच की खिड़की भी लगी हुई है।

और दीवारो पर दो तस्वीर भी लगी हुई है।

और इसके छत में एक पंखा भी लगा हुआ है।

और पीछे एस_बी_आई का एक बैनर लगा हुआ है।

और इन पहाड़ों के बीच में पानी बह रहा है।

और इसके अंदर कुछ गुब्बारों से सजावट की गई है।

और बस में बहुत सी सीट लगी हुई है जिन पर कुछ आदमी बैठे हुए है।

यह एक डॉक्टरों का केबिन है।

यह एक मच्छी की दुकान है।

और इसकी छतों में कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

और इसके बाहर कुछ गमले रखे हुए हैं।

और इसके दीवारों पर कुछ पोस्टर भी लगे हुए है।

और इस में एक गेट और कुछ खिड़कियां भी लगी हुई है।

और इसमें कुछ सरिया भी लगा हुआ है और कुछ लकड़ी के फट्टे भी बंधे हुए हैं।

और एल_सी_डी के अंदर कुछ तार भी लगे हुए हैं।

यह एक्स हाल है जिसके अंदर कुछ लड़कियां और एक बच्ची बैठी हुई है और इसके अंदर बहुत सी कुर्सियां भी रखी हुई है।

और एक नदी भी है जिसमें एक लड़का और एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है।

इस तस्वीर में चार आई_डी रखी हुई है।

यह एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के बाहर के बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।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

और इसके पास में कुछ तारें भी लटकी हुई है।

और आदमी के पास में एक बैग भी पडा़ हुआ है और इसमें फूलों या गुब्बारों से सजावट की गई है।

और इसकी छत पे कुछ लाइटें भी लगी हुई हैं।